यह एक आदमी है जिसने चित कबरी प्रिन्ट की शर्ट पहनी है वो फोन चला रहा है उसके --

प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पांच लोग कुर्सी पे बैठे है दो लोग सामने खड़े है एक व्यक्ति ने कुर्ता और पेजामा पहना है जिसपे उस--

एक लड़का खड़ा हुआ है जो अपने मोबाइल से सेल्फी ले रहा है उसी के पीछे एक गेट है जिस पर पत्तियो की कारीगरी करी हुई है उसी के अंदर एक- क एक--

यहाँ तीन लोग खड़े हुए है जो अपना कांच में से चित्र निकल रहे है इन्होंने नीचे लोअर पहना हुआ है ।

उसीके साइड मे वो बा-दादा बैठे है जिनने सफ़ेद कलर की शर्ट पहनी है पैर मे नीली और सफ़ेद चप्पल है।

यह एक किताबों कि दुकान है।

आस लाइट पर्पल कलर की शर्ट और ग्रे पैंट पेहनी हैं।

यहां तीन बच्चे तीन लड़कियां फिसल पट्टी पर बैठकर बातें कर रही है ऊपर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है।

और उसके पीछे एक नदी है ।